यह स्टेज पर कही लडकिया डांस कर रही हैं।

ये एक हे जिसमे आज खोफ दिखाई दे रही हैं।

अब वो लोग बोट को चला रहे हैं।

अकाउंट एक रिक्शा दिख रही है।

इसमें से कुछ लोग निचे बेठ कर कुछ काम कर रहे हैं।

एक आदमी है वाइट टी शर्ट पेहना है और पिछले हाथ पर कोई --

इसमें से एक आदमी फोन पर बात कर रहा--

शैंपू हें फेस वॉश हे बोहोत सी चीजे हैं।

लेकिन एक दिन मंजिल की मारत हे जिसका नाम गोरवेंट--

उसके बाहर कही सारी लड़किया है यूनिफार्म में खाड़ी है कही सारे लड़के यूनिफार्म में खड़े है और वो महारथ की तरफ देख रहे है।

ये एक फिल्म हे जिसमे रुका हैं।

यहाँ एक तपेला है जिसमे भेंस दिख रही है और उसमे छोटा सा बच्चा दिख रहा है।

एक आदमी सब से मिल कर घर जा रहा हे वहा पर दो भी खड़ी हुयी हैं।

और सब अपने अपने काम में बिजी हैं।

ठेले लगे हुए हैं और वहां शाम होरी हैं इसलिए सभी ब्रिज की लाइट शुरू हैं और कुछ लोग वहाँ फोटो भी ले रहे हैं।

ये एक दुकान हैं जिसपे लाल कलर का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हैं जिसपे बब्लू डेरी लिखा हैं उसमे दही--

कुछ लोग यहाँ सेल्फ कर रहे हे उनके पीछे बाइक हैं।

कुछ लोगो ने अपने लिए--

ये एक बहुत बड़ी दुकान हे जिसमे एक जिप खड़ी हुई हैं।

निचे एक ब्लैक कलर का वाय हैं।

ये एक केक की दुकान है या मिठाई की दुकान दिख रही है जिसमें कई सारे बैलून लगे हैं कलर कलर के एक दीवार पर एसी लगा है।

एक काप को ऊपर की तरफ ले जा रहा एक आदमी--

क्या कपडा हैं जिसमे ब्लू कलर की शेरवानी पहनी हैं।

इसमें बहोत ही रंग बिरंगी फूल है किसी का कलर व्हाइट किसी का यल्लो है किसी का पिंक है तो किसी का ग्रीन है।

ये एक कपड़ों की दुकान है जीसमें कई सारे कपड़े हैंगर में लगे हुए हैं।

यहा एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हे जिस पे एस_जी_जी --

एस कॉलेज लिखा हुआ हैं उसी को लग कर एक गेट बना हैं जिसके अंदर कुछ लोग दिख रहे हैं उसी में एक इमारत भी दिख रही हैं।